जिसके कन्धा पर पालो जैसे खेत में --

यहाँ एक ईंट का दीवाल भी नजर आ रहा है और पानी बह रहा है।